यहाँ पे मुझे एक पथ टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है जिसपे मुझे एक चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है और ग्रीन कलर की--

पहाड़ो की चट्टान दिखाई दे रही है जो की पुरे प पत्थरों से बनी हुई है यहाँ पे बहुत सारे लोगो ने --

एक शॉप दिखाई दे रही है यहाँ पे एक और बोर्ड लगा हुआ है जिसमें रियल चॉइस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और शॉप --

यहाँ पर मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग के ऊपर मुझे कुछ कपड़े ऊपर सूखते हुए दिखाई दे रही है सामने पे मुझे एक बहोत बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

तुम बहोत बड़ा-सा ब्लू कलर का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे में मुझे बैंक दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है सामने पे मुझे एक लड़का खड़े हुए अपने हाथ में बुक लिए--

बस हो यह ट्रक टेम्पू कुछ आते दिखाई भी दे रहा है जस्ट कैमरे के सामने मुझे एक काले कलर का शर्ट पहने एक आदमी खड़ा हुआ मुझे दिखाई भी दे रहा है।

यहाँ का दृश्य मुझे एक जिम का दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहोत सारे वर्कआउट करने की मशीने रखी हुई दिखाई दे रही है एक टेबल दिखाई दे रही है जो कि बैठने की है।

और झूले टाइप में दिखाई दे रहा हैयहाँ का पानी मुझे सब बहोत ही साफ और सुतरा दिखाई दे रहा है सामने पे मुझे वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रही है पीछे पे मुझे बहोत बड़े बड़े से--

यहाँ पे मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसमे जिला पंचायत लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस बिल्डिंग में मुझे बहोत सारे कांच के विंडो भी दिखाई दे रही है सामने पे मुझे बहोत सारी गाड़ियाँ--

पानी बहता हुआ दिख रहा है जोकि वृक्ष से बहेता हुआ नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है और वृक्ष का कलर मुझे बहुत --

यह दृश्य मुझे एक पानी के फौवारे का नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है या गोलाकार का बना हुआ है निचे पे --

यहाँ पे मुझे स्विमिंग पूल की दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहोत ही सुन्दर और नीला पानी दिख रहा है यहाँ पे मुझे बहोत सारे--

पेड़ भी दिखाई दे रहे है ऊपरो के बादल भी मुझे साफ़ दिखाई दे रहा है।